दूर-दूर पहाड़ो पंतजल जंगलो से --

पातिया वगैरा अदा करते हैं।

ये है दत्ता की मोबाइल एवं किसी भी नेटवर्क को यूज --

बोहोत ही सुन्दर और आकर्षित दिखाई पड़ते हैं।

इस जगह एवम पुला प्राणी क्रा कृतियों से --

भीड़ है कुछ अहा कुछ लोग छठ करने --

से साफ-सुथरे एवम मशीन से धोए जाते हैं --

और हम्म हर एक प्रकार के कपड़े साड़ियाँ सूट --

प्रैक्टिकल कर के समझाया जाता है।

इ है वास्तुकला के अनुसार --

फिर भी यहाँ पर पर्यटकों के लिए --

सुविधाएं है। ट्रेनर है। ये बोहोत ही बढ़िया जिम --

बनाया गया हैं कुछ बाईके खड़ी हैं सामने ---

देखने में बहुत बढ़िया नजारा सुन्दर नजारा हैं ।

छठ करने वाले महिला पुरुष एवं --